यह एक नदी है यह बहुत ही बड़ा नदी है और बहुत ही सुन्‍दर नदी है यहाँ पर लोग स्‍नान करने आते हैं और यहाँ पर पूजा भी करते हैं इस नदी --

यह एक एक दुकान है। यह एक कपड़ा का दुकान है जिस- जिस- जिसमें लोग- जिसमें लोग कपड़ा खरीदने जाते है और कपड़े को देखते है। ये बहोत ही --

देखाते हैं यहां यहां हर तरह के बच्‍चे हर तरह के बच्‍चे आते हैंऔर पढ़ते है।